इस-स-से देखने से लग रहा है कि यह एक लाइब्रेरी है यहाँ पे बहोत सारे पुस्तके रखी हुई है कुछ लड़-के यहाँ पे बैठे हुए है कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए है और लाइब्रेरी में आकर पढाई कर रहे है ।

इसे देखने से लग रहा है की यहाँ एक स्कूल है जिसमें बच्चे ड्राइंग कर रहे है वहाँ पे टीचर खड़ी है कुछ लड़कियाँ है कुछ लड़के है जो की पढाई कर रहे है और साथ में ड्राइंग कर रहे है।

यहाँ पे देखने से लग रहा है की खपड़े का मकान है यहाँ पे तीन पिलर है कुछ लोग है यहाँ पे एक दो गाड़ी खड़ी है दोनों स्कॉर्पियो ल देखने से लग रहा है यहाँ पे--

इससे देखने से लग रहा है कि यहाँ पे गाड़ी सजाया गया है फोर व्हीलर है जिसे फूलों से सजाया गया है शादी-वादी के लिए यहाँ पे बहुत सारा फूल है।

यहाँ देखने से लग रहा है कि यहाँ पे दो दुकान है कुछ फल का दुकान है और यहाँ पे काफी आदमी दिख रहे है यहाँ पे बहुत सारी बाइक खड़ी है एक एक पेड़ है और यहाँ एयरटेल फोर जी भी लिखा है।

ये महाकवी तुलसीदास महाविद्यालय है और अंदर बहोत अच्छा मतलब एकदम हरा-भरा पेड़-पौधा दिखाई दे रहा है इधर--

और अंदर बाउंड्री किया गया है वह पे बहोत सारे पौधे दिखाई गए है जो हरा-भरा दिखाए दे रहा है और बहोत बड़े-बड़े यहाँ पे पेड़ दिखा दे रहे है।